समान भी उसमें नीचे थोड़ा बिखरा हुआ है और--

यहाँ पर मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में मुझे दो खंबे दि--

यहां पर मुझे एक मं मकान दि--

यह सजाव दिख रहे हैं यह खंभे दिख रहे हैं।

यह पठान कुछ स्टेशन दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे पानी दिखाई दे रहा है यहां नदी है बहोत बड़ी।

विराजमान है भगवान हाथ जोड़कर बैठे हैं और उसके नीचे एक लड़का खड़ा है लड़के न--

मशीन के नीचे मुझे सिल्वर कलर दिखाई दे रहा है और मशीन मुझे ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है।

यहां पर एक्सरसाइज करने के लिए लड़के आए हैं।

कुछ जेंस और बच्चे बैठा हुआ है वो माला पहन रही है मूर्ति के गले में भी--

यहां मुझे बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग में मुझे--